सुन्दर काफी सुन्दर इस ढाबे को बनाया इन्होने नाश्ता पॉइंट के लिए।

और पीछे में ऊपर से वायर गयी हैं हरे हरे पेड़ हैं बड़े बड़े।

यहाँ एक तालाब हैं तालाब के पास में कुछ लड़की।

ग्रंथालय में बहोत सारी पुस्तके है इस ग्रंथालय को अच्छी तरीके से डेकोरेट किया है सफेद कलर की पेंटिंग किया है।

ग्रंथालय ग्रंथालय यह वर्ड इन्होने लाल कलर में लिखे हैं।

बड़े बड़े पेड़ हैं जो चारो ओर नीचे में हरे भरे।

यहां एक ट्यूशन की तस्वीर है यहां पे पीले कलर की टी शर्ट पहनी बहोत सारी लड़कियां है।

यहां पे बहोत सारे बेंचेस लगे बेंचेस पे लड़के--

यहाँ एक सलब के ढलाई चालू हैं यहाँ पे सलाब के।

यहाँ पे कुछ ले जाने के पेशेंट ले जाने की अ।

नीचे मैं टाइल्स लगी हैं अच्छी तरीके से सफ़ेद और काली कलर ।

बहुत सारे ढेर सारी पत्ती हैं गोभी के पत्ते पेड़ हैं उसके बाद में एक।

ये है यहां पे गोबी के पत्ते है--

यहाँ पे उसके बाद में वो घर है मुर्गी करनी का उसके पीछे में--